ये सीमेंट का बना हुआ रोड है जैसे और आदमी चल रहा है ये टावर हैं ।

पेड़ है ये कुछ लग रहा है स्कूल टाइप लग रहा है स्कूले लग रहा है स्कूले है गाड़ी है वाइट कलर का दिख रहा है।